अब क्या बोलु ओ वॉव सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार दूर को एक--

अम वन ज़ीरो ऐट सेवन सिक्स क्या है रेट लिखा है वन फॉर्टीन फोरटी फाइव नाइनटी वन थर्टी फोर --